स्क्रीन पर यह लोग एज ए एक्टिविटी इंजॉय करने वाले हैं।

जिसके पास में एक पलाश के फूल का झाड़ लगा हुआ है।

यहां पे इस दुकान की ऊपर गोलू फर्नीचर मार्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है।

जिसमें से दो बोट पूरी तरह से लोंगो से भरी हुई हैं जिसमें की कुछ लोग बैठे हैं।

यहां पर एक वर्दी पेहने यूनिफॉर्म में कंडक्टर भी खड़ा हुआ है।

और यहां कुछ लोग बस में चढ़ते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग बस के नीचे खड़े हुए हैं यह बस रेड और वाइट कलर --

और भी सामान यहां रखा हुआ दिख रहा है।

और यहां पहाड़ से नीचे की तरफ झरने गिरते हुए दिखाई दे रहे है।

और नीचे की दुकानें कि दुकानों के शटर डाउन हैं।

यहां पर हमें एक पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है।

एक खुला सा एरिया यहां दिख रहा है।

इसी के ऊपर एक घना सा प्रक्ष लगा हुआ है।

और बाहर की तरफ एक बड़ा सा ग्राउंड है इस ग्राउंड में बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाहर की तरफ यहां पर बहोत सारी टू व्हीलर्स भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

और इस अमूल कि शॉप को तरह तरह के रंगो वाले गुब्बारों से सजाया गया है।

और बाहर की तरफ एक पेड़ या दो पेड़ लगे हुए हैं।

एक मारुति सुज़ुकी सर्विस का सेंटर हैं। यहाँ पर एक शटर दिख रहा हैं जो आधा ओपन हैं।

यहाँ पर एक लड़की व्हाइट कलर का कुर्ता पहने है और ब्लैक कलर की लेग्गी पहने है।

ड्र डांस करती हुई दिखाई दे रही है।

और सामने की दिवाल पर एक टी_वी चल रहा है जिसमें की मैच चलता हुआ दिख रहा है।

यहां पर और भी ट्रक पेट्रोल डीजल के लिए खड़े हुए हैं लाइन में।